एक लोह का पुल भी दिखाई दे रहा है सामने की तरफ मुझे टेनो की छत भी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक डमी दिखाई दे रहा है जिस पे एक ब्लैक कलर की शर्ट पहना हुआ है।

टीनो की बनी हुई छत भी दिख रही है पेड़ भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो बड़ी दुकानें दिखाई दे रही है जिनके गेट है वो शीशे से बने हुए हैं।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

दो गाड़ी भी दिखाई दे रही है एक बस भी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटर दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्तिया भी दिखाई दे रही है एक सामने --

इस तस्वीर में मुझे कुछ पत्थरों की बनी हुई दीवार दिखाई दे रही है कुछ हरा भरा पेड़ों का इलाका भी दिखाई दे रहा है।

सिल्वर की कुंडी दिखाई दे रहे हैं कुछ--

इस तस्वीर में मुझे एक ऑटो दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक मुझे गाड़ी भी दिखाई दे रही है एक कटा हुआ पेड़ भी दिखाई दे रहा --

एक चलती हुई ट्रेन दिखाई दे रही है।